ये बहुत हरे भरे पेड़ हैं जिस में हरा भरा बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ये हरे भरे पेड़ से सकती है इसकी अच्छाई होती है --

गाड़ी धुली जा रही है गाडी़ का शोरूम है गाडी़ को धुल के उपयोग किया जा रहा है गाड़ी धुला के रख--

गार्डन में बहोत हरियाली है। बहोत ही किया जा रहा है। बारिश होने के कारण हम सब सबकुछ कर सकतें हैं। ये बारिश के कारन --